ये फोटो हरि मेडिकल स्टोर की है जिसमें एक कांच का बड़ा गेट लगा हुआ है।

ये फोटो महेश जी विश्वामित्र भवन की है ये केंद्रीय पुस्तकालय है।

इसमें हम साफ देख सकते हैं।

यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है लोगों की हाइट का वजन का ये एक सरकार द्वारा --

दो लोग कॉफी पी रहे हैं और कॉफी पर जीव --

ली गई तस्वीर है इसमें बहुत सारा पानी सड़क पर फैला हुआ है और दो बड़े बड़े पिलर खड़े हैं।

ये फोटो या तो किसी लग्जरी होटल की है या किसी शादी ब्याह की है।

और साथ में आप देख सकते हो रास्ते के आजू बाजू बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यात्री अपनी जहां बस का इंतजार करते हैं ये और कोई नहीं मेरे भाइयों ये एक है बस स्टेशन ।

ये बस स्टेशन है कुछ बच्चे सामने से जा रहे हैं सामने एक बड़ा--

इस किले पर बहोत ही कलाकृतियां बनाई हुई है ये किले की दरवाजे खिड़कियां बहुत सुंदर है।

जो कि चौबीसो घंटे ओपन रहता है साथ ही में --

कार्तिक के जनरल स्टोर के बाहर गुब्बारों से डिजाइनें दी गई है और इसके पास में एक --

यहां पर एक टी_वी बड़ी सी कोन --

जो कि बीकानेर के इयरा गांव --